शटर भी दिखाई दे रहा है इसमे ताला वी दिखाई रहा है छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है एक पीला हुई से पत्ति बी दिख रही ऊपर बादल भी दिखाई दे रहा है।